दीवारें सफेद रंग की हैं गेट का रंग थोड़ा नीला है गेट के बाहर इंटे बिछी हुई हैं ।

और जाल के अन्दर उनको रखा गया है।

बनी हुई है| हरे रंग का कारपेट है और टेंट के पर्दो का रंग भी हरा है| अन्दर बहोत सारी कुर्सिया पड़ी हुई है जिनका कवर सफेद रंग का है।